बहुत बच्चे ब्लू कलर के ड्रेस पहने हैं और बहुत बच्चे ग्रीन कलर के--

जैसे कि कुर्सी टेबल पंखा और इस दुकान के बाहर में एक गाड़ी भी खड़ा है।

यह एक दुकान का फोटो दिखाया गया है।

और यह जवाहर आश्रम सफेद कलर का है और इसके दीवालों में लाल कलर का भी रंग गया है यह जवाहर आश्रम काफी ज्यादा बड़ा है।

यहां पे एक व्यक्ति सफेद कलर का सर्ट पहने हैं और ब्लू कलर का जींस पहने हैं।

इस बिल्डिंग में बहुत ज्यादा आदमी है इस बिल्डिंग का नाम है द बर्गर कॉक ।

टेबल लगाए गए हैं इसमें बहुत सारे सामान भी रखे गए हैं।

यहां पे सारे कपड़े को अच्छे तरीके से रखा गया है।